ये एक स्कूल है और यहां पे झंडा रोपण हो रहा है बहुत सारे लोग जो खड़े हुए हैं।

कुछ मोटरसाइकिल बादल का रंग देखने में नीला लग रहा एक दो पंखे खंबे लगे हुए --

एक बोतल लकी है और लाल कलर का एक बॉक्स रखा हुआ है।

साइड में बहुत सारे अ ट्राली बैग रखे हुए है।

पीले कलर का एक डिब्बा रखा हुआ है और इसमें मिठाइयां वगैरा रखी हुई हैं।